झोपड़ी बना हुआ है जिसमे मैकेनिक का सामान रखा हुआ है।

सफ़ेद अक्षरों में कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है दरवाजे के सबसे ऊपर एक आकृति भी बनी हुई है।

झंडियों के सामने एक बिजली का खम्बा है और उसके बराबर में कुछ पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे है।

ठेले पर नीचे लाल रंग है ठेले के सामने एक टेम्पू भी खड़ा हुआ है।

यह एक मंदिर है. मंदिर में एक मूर्ति काफी सु सज्जित कपड़े पहने हुए है।

यहाँ दो मजदुर पोताई का कार्य कर रहे है एक मजदुर सीढ़ियों के ऊपर बैठा है।

और सामने एक बड़ा चरक है चरक के बराबर में एक--

मूर्ति के सामने एक नदिया बना हुआ है जो की एक चौकोर चौकी के ऊपर है।